ये तस्वीर में ये लड़का फोटो क्लिक करवा रहा है कैफे के बाहर। द सिटी कैफे इस कैफे का नाम है।

ये तस्वीर रास्ते में माँ दुर्गा के और बाकी सारे भगवान की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए लेके जाया जा रहा है। बा --

ये एक स्टेज शो की तस्वीर है जहाँ पर कई सारे लड़के और लड़कियां मिलकर स्टेज पर डांस कर रहे हैं।

सामने से देख रहा है और कई सारे लेबर वगैरा काम करने मे लगे हुए हैं।

इस दृश्य मे कई सारे मजदूर हैं जो मशीन से मसाले बनाए जा रहे हैं। कई सारे ईटें हैं।

ये तस्वीर एक गोदाम की है गोदाम के बाहर ये इतने सारे लेबर हैं जो गाड़ी पर सारा सामान लेकर आये हैं जो --

ये तस्वीर एक दुकान कि है मा चंचला ड्राइ फ्रूट्स जहाॅं पर केले सेब बोहोत सारे फल दिखाई दे रहे --